इस वॉटर फॉल के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू येलो वाइट है इस गेट के बाहर--

इस अलमारी के अंदर वाइट और ब्लू कलर की डिब्बिया रखी हुई है।

रेड है ऑरेंज है ब्लैक है वाइट है।

यहाँ पेड़ भी हरे हरे थे कुछ छोटे पेड़ थे कुछ बड़े पेड़ है।

ये बिल्डिंग वाइट कलर में है इसमें ऑरेंज कलर की बॉर्डर है।

सड़क के पास में एक घंटा घर है घंटा घर पर एक बड़ी-सी घड़ी लगी हुई है उसके पास में कुछ झाड़ है झाड़ हरे-हरे है यहाँ पर कुछ लोग है।

वाइट कलर का बोर्ड है इस दुकान में दो आदमी खड़े हुए है एक आदमी ने रेड कलर का टीशर्ट पहन रखी है एक आदमी ने ऑरेंज कलर की पहन रखी है।

कुछ झाड़ बड़े है कुछ झाड़ छोटे है यहाँ कुछ लोग है कुछ लोग बैठे हुए है कुछ खड़े हुए है यहाँ पर कुछ टायर पड़े हुए है कुछ टायर टंगे हुए है।

यहाँ एक गेराज है गेराज में कुछ गाड़ी सुधर रही है यहाँ पर कुछ आदमी है।

ये इस इसके पास में एक रेड कलर का बैनर लगा है।

इसके बिल्डिंग के पास में एक फुटपाथ है फुटपाथ के पास में--

यहाँ एक दुकान है दुकान के बाहर एक वाइट कलर का बोर्ड लगा है बोर्ड पर श्री राम क्लॉथ इम्पोरियम--

यहाँ पर एक फुटपाथ है इस फुटपाथ पर कुछ शावर लगे हुए है यहाँ इस फुटपाथ पर कुछ ब्लॉक लगे हुए है।